होसन के बेग ले ले ह सफ़ेद रंग का सेट पहेने ले ह ओहर देख त एक ठे आदमी डंडा लेके आवत ह। पेट्रोल पंप ह। बस में डीजल भरा ता। पी पीला कलर का टंकी ह।

खाजा लड्डू ह बर्फी ह र-गुलाब जामुन ह रसगुल्ला ह काजू कतरी ह ।

खड़ा होके अगल-बगल पूरा पेड़ ह बड़ा-बड़ा पेड़वा ह एकदम खेतवा एकदम सुखाईल सूखा--

ए दौड़ लगावत हउवन तीन ठे लइका जवन की एक ठे एकदम आगे ह दू ठे ड्रेस में हउन।